यो एक क्लिनिक दिखाई देन लाग रहे रोग विशेषज्ञ--

एक गाड़ी भी खड़ी दिखाई दे लाग रही है। मोटरसाइकिल भी खड़ी दिखाई दे लाग रही है।

इसके ऊपर कुछ लख रखा है इंडिया ग्लास एल_टी_डी ।

यह एक पिक्चर दिखाई देना लाग रि है बाहर सड़क दिखाई देना ये सड़क पे कूड़ा कचरा खन रेया है।

ये आई पिक्चर दिखाई दे रहा और इसमें घोड़े दिखाई दे रहा और ये बहोत घड़े सारे--